कांच की लिफ्ट है और बहोत सारे तलवारे शास्त्र भी रखे हुए हैं बहोत सारे लोग इसको देखने को आये है ऊपर छत है सफेद कलर की --

ये एक कार का हॉल है जहां पे बहोत सारे टायर वगैरा लगे हुए है और ब्लू कलर का काउंटर रखा हुआ है उसका कलर सफेद है।

विंडो लगी हुई है नीचे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और बहोत सारी गाड़ियां हैं सड़क है घर है बहोत सारे लोग आ रहे जा रहे --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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है जो की एक मॉल है यहां पे --

ब्रेड जेम्स ये सब मिलते है और यहां पे सॉस बॉटल्स वगैरह सब कुछ इस सामान मिलते है।